इस दृश्य में ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

और इस दृश्य में एक घर भी दिखाई दे रहा है।

और सारे लोग अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं इस दृश्य में नाका भी दिखाई दे रहा है।

और चित्र भी दिखाई दे रहे हैं और इस इस पंडाल का कलर पीला व्हाइट लाल है।

और इस दृश्य में एक खिड़की भी दिखाई दे रहा है दृश्य का दीवार का कलर व्हाईट है।

जो अलग अलग कपड़े पहने हैं और इस दृश्य में पत्थर भी दिख रहे हैं।

इस दृश्य में फूल दिखाई दे रहे हैं।

और यह फूल गेंदा का फूल हैइस दृश्य के फूल में एक और फूल है।

और इस दृश्य से में पंखा भी दिखाई दे रहा है और इस दुकान का दीवार का कलर पीला कलर का है।

इस दृश्य में एक सड़क दिखाई दे रहा है।